यह चित्र एक रेल ट्रैन से रिकॉर्ड किया हुआ चित्र है।

यह चित्र में हम द देख सकते है की यह चित्र एक बगीचे का है जिसमें बहोत सारे फूल लगे हुए हैं।

ये ये कर रहे हैं।

हैं पीतल के गिलास इंडियन घरों में ही पाए जाते हैं।

यह चित्र पेट्रोल पंप का है पंप पर हम देख सकते हैं के पेट्रोल पंप पे डीजल भी बिकता है यहाँ।

जैसे आप चाहे जैसे पाइनएप्प्ल मैंगो चॉकलेट और अन्य --